और बीच में काफी व्हाइट कलर से लिखित भाषा में नजर आ रहा है।

इस दृश्य में आपको एक गुरुद्वारा नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर नीला आसमान--

और पेट्रोल पंप की बाउंड्री नीली और पीली नजर आ रही है।

पी_पी_एस पी_पी_एस टाटा मोटर्स का आफिस नजर आ रहा होगा।